तस्वीर में नीला आसमान दिखाई दे रहा है कुछ झाड दिखाई दे रहे है कुछ इमारते दिखाई दे रही है और एक बहुत बड़ा सा पार्क नजर आ रहा है जो खाली है।

तस्वीर मे एक कक्षा नजर आ रही है जिसमे बहुत सी मेंजे रखी है कुछ लकड़ी की कुछ लोहे की जिसके सामने कुछ बोर्ड लगे है जिसपर कुछ नहीं लिखा है।

तस्वीर में दुकान दिख रही है जिसका अंग्रेजी में बोर्ड है हेयर एक्सपर्ट प्रोफेशनल सेलोन करके।